ये स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर हैं। यहाँ पे रंगोली कॉम्पीटिशन हो रहा है। बच्चें बहुत मन से रंगोली बना रहे हैं और रंगोली बना के बहुत ही इंटरेस्टेड इनको लगता है।

बच्चे चाहते हैं हम अपना डेली डेली वर्क में अपना जिम जाया करें। ब --

अम पंडित ही है। ये लोग आते हैं चर्चों में अपना डेली पूजा करते हैं। ये लोग अपना बईबाल पढ़ते है। इन लोग की ईफ ईसाई --

यहाँ ये मछली मंडी है। यहाँ पे हर प्रकार की मछलियां मिलती है और कम दामो में भी मिलते ताज़ा एकदम फरेश मछलियां मिलती हैं। यहाँ दूर-दूर से मछलियों की यहाँ मंडी लगती है।

वाला है। अ काली मंदिर के पास है। यहाँ पे बहोत ही अच्छी पढाई होती है। ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे फिज़िक्स की पढाई फिज़िक्स उम्म की पढाई होती है और मैथ्स की पढाई होती है। बच्चे झूर दूर से भी आते हैं।

और ये काली मंदिर चौराहा के पास है और ये बेस्ट कोचिंग माना जाता है।

ई बोलेरो गाड़ी है। इसमें चार लोग जा रहे थे हाईवे पे यहाँ पे खूब बहुत भयानक ही एक्सीडेंट हो गया। पूरा बोलेरो --

फाइव हंडरेड में आप जितने घंटे तक जिम जा सक --